काफी सारे जो है पेड़ दिख रहे है छोटे-छोटे घास दिख रही है।

जो है डी मार्ट टाइप का बना हुआ है यहां पे जो है काफी सारा सामान भरा हुआ है।